जैसे की इस पिच्च में एक शिवलिंग है। शिवलिंग के ऊपर एक छोटा सा बुद्धा जी का स्टेच्यू बना हुआ है।

मन ये ऐसे ही शिवलिंग मंदिर में पड़ा हुआ है। पीछे कुछ सीढ़ियां हैं और आसपास में व्हाइट कलर का पेंट है।

उसके पास में एक पेड़ है जिसकी छाया पे एक आदमी अपनी बाइक लगा के ख बैठा हुआ है।

जैसे कि हम चेक कर पा रहे हैं ये एक व्यू है। ये किसी जू का जंगल का व्यू है जहाँ पे बोहोत सारे आ एनिमल्स हैं।

जो कि गास खा रहे हैं। बोहोत सारी गायें हैं जो गास खा रही हैं। बोहोत ही ग्रीन कलर का गास है और पीछे एक छोटा सा रोड क्रॉस कर रहा है।

जैसे कि हम चेक कर पा रहे हैं एक छोटा सा कैफ़े है। कैफ़े का स्टील कलर का गेट है। बाहर एक उस ब्लैक कलर की बाइक लगी हुई है।

रेड शर्ट में एक आदमी खड़ा है जिसने व्हाइट मुफलर से अपना फेस कवर किया हुआ है। बस की ड्राईवर सीट के साथ में एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है।

जैसे कि मैं चेक कर पा रही हूँ ये बस के ऊधर से पिक्चर क्लिक कर रही है एक दो बसेस के फेसेस दिख रहे हैं पास मे दो रेढ़ी हैं। उनके ऊपर कुछ नारियल पानी की तरह कुछ --